ट्रेन बुक स्टोर किताब का दुकान है इस दुकान में तीन आदमी बैठे हैं और मोबाइल नंबर --

पीला कलर गुब्बारा है लाल कलर है और यहां फूल भी लगाया गया है।

यह एक बहुत बाड़ा रोड है हाइबा रोड है इसके बगल में रेलिंग है अ रेलिंग के ऊपर पाइप है।

सामने एगो बखार है और इसके बगल में खेत वोत है सब।

एक और मशीन है एक बाइक है साइकिल है और उसके बगल में झोंपड़ी --

एक ढाबा है ढाबा के आगे लाइट लगा हुआ है।

ब्लैक कलर का टीशर्ट पहना हुआ है और बहुत बड़ा एल_सी_डी है।

यहां एक होटल है एक आदमी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं।

पाइप है और गिट्टी है बालू है उसके बगल में एक पेंड़ है।

यह एक मीट का दुकान है इस पे लिखा हुआ है चंपारण मीट हाउस --